हरे रंग के झाड़ हैं उनकी टहनियां ब्राउन रंग की हैं।

हरे रंग के झाड़ है इसकी टहनियां ब्राउन रंग की हैं।

ब्राउन रंग की जमीन है ब्राउन रंग की कुर्सी है।